यहाँ पर बहोत सारी स्कूटीज दिखाई दे रही है दीवाल पर बहोत सारे बोर्ड्स भी लगे हुए है यहाँ पर लोग टेबल और कुर्सी लगा कर बैठें हुए दिखाई दे रहे है।

--जिसमें से एक खड़ा हुआ और बाकी सब नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं पार्क के जस्ट बगल में एक छोटी सी नदी दिखाई दे रही है जिसके आईट साइड कई घे घर और पेड़--

जिसमे रेड कलर के शटर है ये शटर अभी बंद है शोरूम के बाहर बेरिंग गेट लगे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर एक बिजली का खंभा भी दिख रहा है जिसमें तार लगे हुए है।

मॉल बना हुआ है जो कि बाइको का मॉल है मॉल के अंदर काफी सारी बाइक खड़ी दिख रही है और मॉल के सामने एक कैरी भी दिखाई दे रही है रोड पर भी कुछ गाड़ी और लोग दिख रहे है।